उसके हाथ में लोहे के औजार हैं।

जिस पर डांस सिटी कैफे लिखा हुआ है।

और बहोत सारे आदमी भी यहां दिख रहे हैं।

ये तस्वीर एक बड़े खे--

और बहुत सारे बिजली के तार भी हैं।

दीवार पर टी_वी भी लगा हुआ है।

बेड के ऊपर गद्दे और तकिया रखा है।

उस पर एक लड़का बैठा है।

यहां एक लड़का साइकिल के साथ खड़ा हुआ।

ये तस्वीर बहुत सारे लोगों की है ये किसी मंडल में खड़े हैं।

यहां एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

गुब्बारो का रंग काला और पीला है।

ये तस्वीर कुछ लोगों की है।

रैक के ऊपर बोनबीटा और हार्पिक भी रखे हैं।

ये तस्वीर एक जंगल की है।

ये तस्वीर एक दुकान की है।

ये तस्वीर एक बहोत बड़ी--

बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

ये तस्वीर एक सड़क की है।